और सभी बच्चे बूढ़े और भी जवान लोग सब यहाँ पर काम कर रहे हैं देख भी सकते हैं हम लोग पिछले छत पे काम कर रहे पीछे सा दिख रहा है।

यहाँ पर एक जैसे का फोटो दर्शाया गया है । यहाँ पर इसका बहुत ही सुंदर सा इसका दिखाई दे रहा है । यहाँ देख सकते हैं इतना अच्छा एक छोटा सा एक जैसा वहाँ पर दिया हुआ है । इसमें जो होता है हमारा कितना अच्छा सा सुंदर सा यहाँ पर दृश्य जो है दिखाया गया है ।

जिससे कोई काम नहीं हुआ अंदर आ सके यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं यह जो घर बहोत --

ड्रेस का यहाँ पे दिया हुआ है। कितना ड्रेस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ड्रेस वो भी बहुत ही फैश फैशन ड्रेस है यहाँ पर। बहुत ही मतलब अच्छा-अच्छा और सस्ते ड्रेस हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप और अच्छे क़्वालिटी के सस्ते यहाँ पर ड्रेस ले सकते हैं। बहुत ही कम दामों में --